एक लड़का है खेत पे है जो की यहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं सब्जियों के ग्रीन कलर के जो की व्हाइट कलर के ईयरफोन लगाया है।

ये मार्केट है जो कि रोड है खाली है भरी है और एक गाड़ी है जो कि ब्लैक है एक अंकल है जो कि व्हाइट शायद एक हेलमेट लगाये है ब्लैक कलर का।

एक फैक्ट्री है जो कि बोहोत सारे एम्प्लॉयमेंट करे हुए हैं पचास लोग और --

सब लोग पहने हुए हैं ड्रेस रेड कलर की। काफी अच्छे लग रहे हैं। कुछ समझा रहे हैं सब जो कि ग्रीन पहने है और ब्लू पैन्ट पहने है।

चड्ढा पहना है व्हाइट कलर का। काफी सारे डंबल हैं जो कि व्हाइट दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर की बहुत सारी मशीन हैं मेट है क्योंकि ब्लू और रेड है।